बहुत अच्छे नजारे देख रहे हैं पहाड़ बहुत ही पुराने पहाड़ दिखने मे लग रहे हैं बहुत अच्छे लग रहे है दिखने मे बहुत ही खुबसूरत है पहाड़ और पहाड के पीछे एक घास वृक्ष लगी है जोकि बहुत ही खुबसूरत लग रहा हैं दिखने मे

एक मकान मे जो की कोई फंक्शन होने जा रहा हैजो की बहुत सारे लोग खड़े हुए है नीचे बहुत सारे लोग है जो कुर्सी पे आडियन्स बैठे हुए है। मकान काफी खूबसूरत देखने मे लग रहा हैअलग-अलग तरह की लाइट लगी हुई है। उसके पीछे मे एक---

उसके बगल मे औरत खड़ी है जो की बहुत अच्छी साड़ी पहनी है उसके बगल मे बहुत सारे सामान रखा है जो की काफी खूबसूरत सामान सब है उसके बगल मे नीचे मे सीढ़ी दिया है जो की कोई पुजा पाठ का लग रहा है।

एक रोड है जो मार्केट का काफी साफ-सुथरा लग रहे है बहोत -सारी गड़िया लगी हुई है जो की बहोत सारे लोग है जो की अपने-अपने काम कर रहे हैबहुत-सारी गड़िया लगी हुई है टेंपू लगी हुई है।

एक औरत और मर्द आते जाते दिख रहे है उसके बगल मे काफी गाड़ी लगी हुई है ब्रिज पे जो की बहुत सारे लोग अपने अपने काम मे खड़े हुये है जो की आते जाते लोग है।

उसके बगल मे बाइक है जो बाइक काफी सुंदर लग रहा है देखने मे सब बगल मे बहुत सारे लोग है जो की अपना अपना काम कर रहे है अपने अपने कार्य मे लगे हुए है आते जाते दिख रहे हैलोगो --